लड़का खड़ा है वो नज़ा ए बो बो नज़ारे को देख रहा है।

बृच्छ सब बोहोत सुन्दर लग रहे हैं।

यह एक हुट यह एक होटल है।

इसमें बहुत बहुत बड़ी फसल पैदा भी हो सकती है।

लोग आएंगे एन्जॉय करेंगे।